आप देख सकते है इस फोटो में आपको एक घर बना हुआ नजर आ रहा है।

टेक्टर के पीछे आप देख सकते हैं आपको एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में आप देख सकते है आपको काफी खूबसूरत एक अ घर बना हुआ या फिर एक गेट बना हुआ नजर आ रहा है जहाँ आप देख सकते है उसके सामने आपको --

जहाँ आप देख सकते हैं। यहां एक बहुत बड़ी नदी नजर आ रही है। नदी के ऊपर पुल बना हुआ है हरी-हरी घास लगी है।

घर के नीचे आप देख सकते हैं आपको पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

जहाँ आप देख सकते है जिम पीले रंग से पैंट की हुई है यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी नए तरह नए तरीके की मशीनें रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे आप देख सकते है आपको एक हॉस्पिटल नजर आ रहा है जिस हॉस्पिटल श्री राम हॉस्पिटल है।